चें ने अपनी गोद मे एक छोटा सा बच्चा ले कर रखा है जिसने लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ।

ऊपर प्लेट मे हरे कलर की रंगोली लेके एक लड़की हरे कलर का कलर भर रही है।

दुकान के ऊपर नीले कलर की लाइट जल रही है दुकान का नाम लिखा हुआ है।

ईंट वाली दीवारें हैं जोकि काफी पुरानी लग रहीं हैं।

स्टेज बहोत ही कलरफुल है जैसे की गुलाबी कलर ।

छोटे-छोटे शोपीस रखे हुए हैं क्रिसमस ट्री के।

सफ़ेद और काली कलर की कारें भी खड़ी है।

एक आदमी खड़ा है जिसने हरे कलर की टी-शर्ट पहनी है और नीले कलर का पेंट पहना है।

बिल्डिंग मे बहोत सारी खिड़कियाँ हैं।

और भी बहुत से बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पे बड़ा-सा गार्डन है।

ऊपर नीला आसमान है बिजली का ट्रांसफ़ॉर्मा है।

जो की कही लाल कलर का है तो कही पीला कलर --

लाइफबॉय का फेस वाश रखा हुआ है।

जहाँ बहोत से तरीके के फल रखे हुए हैं।

नीचे कांच का गेट है।

बाहर एक नीले कलर की चप्पल उतरी हुई है।